ये सामने जो आप देख पा रहे है ये एक चर्च का दृश्य है और एक व्यक्ति सामने खड़े होकर माइक से कुछ बोल रहे हैं।

बोल रहे हैं या मैं कहू के गाना गा रहे हैं एक बन्दे साइड मे खड़े हुए हैं उनके लेफ़्ट हेन्ड साइड में और लेफ़्ट हेन्ड साइट में खडे होके वो म्यूजिक शायद दे रहे --

कुछ लोग भी इधर इकट्ठे हो रखे हैं और सामने की तरफ एक व्हाइट गाड़ी है।

और इधर कुछ बन्दे अ खड़े हुए हैं अह राईट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं इधर एक वृद्ध महिला भी खड़ी हुई हैं एक लड़का उधर से आ --

ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस पे जो पोस्टमैन वगैरा हैं बोहोत ही ज्यादा मेहनत करते हैं आप सामने देख रहे हैं तीन चार बाइक भी खड़ी हुई हैं।

क्योंकि इनवायर्नमेंट अच्छा बना रहता है ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है और ये बच्चे वही पौधे लगाकर नाम का काम कर रहे हैं बहुत ही शानदार काम है ये।

और लड़कियां भी देखकर अपने आप को एक बार तो अ हैरानी हो जाती हैं कि भाई हम क्या थे और क्या हमें बना दिया।

बोहोत सुंदर देखने मे ये लग रहा है ये बच्चा खड़ा होकर पूरा इंजॉय कर रहा है लाइटिंग वैगरहा को कितनी कलर्ड वारी लाइटिंग है। बोहोत सुंदर ये लग रहा है ये देखने में।

ये देखिये सामने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सरीला हामिरपुर में और ये दो बाइक इसके सामने खड़ी हुई हैं दो बंदे सामने की तरफ ही बैठे हुए हैं।

ये देखिए यहाँ प सामने केनरा बैंक देख रहे हैं। केनरा बैंक के पास में ए.टी.एम. भी है और बैंक से काफी हेल्प दी जाती है लोगों को।

यह देखिए सामने की तरह आप बेडरूम देख रहे हैं | तो बेड इधर है और सामने देखिए एक खिड़की जो है पूरा बाहर की तरफ खुलती है | पूरा दरवाजा जो है --

जिन्हे मिनी मेट्रो बोला जाता है ई रिक्शा जिन्हे बोलते हैं और सामने एक बोर्ड लगा हुआ है साइकिल मार्ट । एक लेडीज हैं जो बालकनी में खड़ी हुई है पीछे की तरफ मिनी मेट्रो के पीछे एक जेंट्स भी खड़े हुए हैं।